तीन फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमे एक- अअअ खाने बीच मे --

और फुटपाथ है घूमने का ग्रीन -ग्रीन जा--

एक छोटी सी दुकान दिख री है फुटपाथ पे मिनी टेम्पो खड़ी है और ये रेड कलर की है उसकी सीट वाईट कलर की है।

अम एक दरगेह का फोटो दिख रहा है जहाँ पर दरगाह सफेद कलर का दिख रहा है जहाँ दो मजदूर दरगेह को दुरुस्त करने में लगे हुए --

मशीन लेकर उसको सुधारा जा रहा है और एक हेलोज बिखरा हुआ है जो स्पीकर आवाज़ करता है।

पिंक ब्लू सिल्वर ब्लैक कलर के दो स्कूटर दिख रहे हैं येलो कलर के एक रेड कलर का स्कूटर ।

दीवाल पर एक ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी दिख रहा है जहां पर सफेद कलर की दीवार है रेड बॉर्डर के साथ स्टेशन का नाम दिख रहा हे

दीवार पे और यहां पर एक रेल पटरी दिख रही है।

लोक के बिल्डिंग का कलर है रेड कलर। इसमें छे कलर छे वीएनंडोज़ दी हुई हैं और मरून कलर की बिल्डिंग ऊपर का एरिया है। साइड में लाइट येलो कलर की --

बॉर्डर दी हुई हैं लोहे की रोड से और एक पाइप भी है ब्राउन कलर का पाइप भी बिखरा हुआ हैं।

ये एक कपड़े की दुकाने दिख रही हैं यहाँ पे बोहोत सारे पुतले खड़े हुए पुतले ने अलग-अलग प्रकार के --

दो लाइनिंग कलर के टी-शर्ट पहने हुए हैं कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने प्लेन कलर के कपड़े पहने--

पीछे साइड में बहुत सारे झाड़ दिख रहे है एक सिक्सटी वन का पोस्टर भी दिख रहा है नंबर वाला।

एक आदमी दिख रहा हैं जो हौंडा पे खड़ा बैठा हुआ हैं पीले कलर की शर्ट पहन कर सामने दुकान है चोकर साइकिल दिख रही हैं।

एक मोबाइल की दुकान दिख रही है जहाँ पर अलग-अलग टाइप के मोबाइल के पोस्टर दिख रहे हैं।